और इस चित्र में बहुत अंच्छी क्वालिटी आ रही है।

उस बेड के ऊपर कुछ टोपिया रखी हुई है।

और इस चित्र में एक पानी की है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी ग्राउंड का है।

यह एक चित्र है यह चित्र योगासन का है।

और एक बंदर है और इस चित्र में एक इंसान है उस इंसान का हाथ दिख रहा है।

इसने पीले कलर के वस्त्र धारण कर रखे हैं।

और इस चित्र में एक बोतल है और लाइट बल रही है।